प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग-अलग प्रकार की हैं।

जिस पर रेड कलर के कुछ कुशन रखे हुए हैं।

जिसकी दीवार पर बहुत सारे फोटो नजर आ रहे हैं वाइट कलर की है।

कपड़े टंगे हुए हैं एक दीवार है।

इस चित्र में हमें बहुत सारे कपड़े रखे दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग-अलग कलर के हैं।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

और बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं।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

कुछ लोग हैं जो खड़े नज़र आ रहे हैं।

पीछे एक व्हाइट कलर का पर्दा है जिसमें तीन लाइटें जल रही हैं।

इस चित्र में हमें बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

वो कार रेड कलर की है।